कुछ ये लोग अपने से सीढ़ी बना हुआ है एक लोहा का ग्रिल दिख रहा है उसपे बगल में कुछ आदमी वगैरह खड़े हुए एक स्टेज टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत सारे --

और ऊपर एक लोहे का एंगल दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है वॉल का कलर ब्लैक एंड वाइट कलर का है एक दरवाजा दिख रहा है जो ब्लैक कलर के है पीछे कुछ लकड़ी --

और बास टाइप के कुछ खड़े रखे हुए हैं ऊपर से एक तार वगैरह झुला हुआ है।

एक आदमी दिख रहा है या और एक बच्चा है जो स्टेज पे दिख रहा है कुछ ब्लैक कलर का दिख रहा है एक वाइट बॉक्स दिख रहा है पीछे एक बैनर है जो येलो कलर का --

बहुत बड़ा पेड़ वगैरह दिख रहा है कुछ बच्चे वगैरह दिख रहे हैं मंदिर में कुछ घंटी वगैरह लगे हुए है अंदर एक लोहे का ग्रिल बना हुआ है और कुछ खिड़की वगैरह दिख रहा है।

ड्रम भर दिख रहा कुछ वॉटर बॉटल दिख रहा है कुछ रंग के बाल्टी वगैरा दिख रहे हैं कुछ येलो के डब्बे में कुछ सामान हुए दि--

दिख रहे हैं कुछ लैपटॉप ऑफ दिख रहे हैं कुछ खिड़कियाँ दिख रही हैं जिसमें पर्दा व लगा हुआ है और दो चेयर दिख रहा है जो गोल्डन कलर का है कुछ टाइल्स वैगरह दिख रहे हैं जो वाइट कलर का है।

एस्कॉर्ट टाइप का बना हुआ है जो वाइट येलो कलर का पीछे कुछ खिड़की वगैरा दिख रहा है जिसमें कांच लगे हुए है एक लोहे का आ खंभा टाइप का दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक खाली छत टाइप का दिख रहा है जिसमें कुछ रोड वगैरह निकले दिख रहा है बगल में --

एक वॉल दिख रहा है जो आसमानी कलर का है कुछ लोहे के पाइप वगैरह दिख रहा है कुछ प्लास्टिक रिबन वगैरह दिख रहे हैं जो येलो रेड ब्लू कलर के हैं ऊपर एक बेनर लगा हुआ है इसमें स्टील --

कुछ उधर जाली टाइप के दिख रहे हैं एक ब्लू बोर्ड है जिसमें तीर का निशान दिया हुआ है कुछ नीचे ग्रे ग्रे --

अ ब्राउन कलर के टाइल्स वगैरह लगे हुए है कुछ लोहे के कुछ स्टील के पाइप वगैरह लगे हुए कुछ बैनर वगैरह लगा हुआ है बैनर वगैरह लगा हुआ है कुछ घंटी टाइप --

बोर्ड में दिख रहा है कुछ एलइडी लाइट वगैरा दिख रहा है वाइट कलर का है कुछ--

इस फोटो में हमें एक अह मूर्ति दिख रहा है जो दुर्गा अह पूजा का मूर्ति है जिसमें बहुत सारे भगवान के मूर्ति भी देखें जा रहे हैं जो गोल्डन कलर के हैं।

वाइट कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं कुछ लाइट बरे दिख रहे हैं एक सीट टाइप का दिख रहा है जो ग्रे कलर का है कुछ नीचे मैट बिछा है जो रेड और ब्लू कलर का --

इस फोटो में हमें एक तालाब तालाब दिख रहा है जिसमें कुछ हरे हरे पत्ते वगैरह दिख रहे हैं --

रेड कलर का थैला है ऊपर एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है उसके पीछे कुछ खाली मैदान टाइप का दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक फैक्ट्री टाइप का दिख रहा है जिसमें कुछ पेंटिंग होता दिख रहा है कुछ लोहे के बड़े-बड़े मशीन वैगरह दिख रहे है जिसमें एक हरा कलर का बो पानी का बॉटल दिख रहा है ऊपर कुछ --

कार्टून वगैरह बॉक्स वगैरह दिख रहे ऊपर एक फोटो दिख रहा है जिसमें गणेश जी का मूर्ति बना हुआ है --

इस फोटो में हमें एक इलेक्ट्रिक शॉप दिख रहा है इसमें बहुत सारे बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं जिसमें कुछ गैस के लाइटर वगैरह प्लग वगैरह पाइप वगैरह कुछ बॉक्स वगैरह कुछ होल्डर वगैरह --

एक बेला टाइप का दिख रहा है जो वाइट कलर का है एक आदमी महल से बाहर निकलते दिख रहा है बाहर रोड दिख रहा है।

जो छाया कलर का है उसके बगल में कुछ छोटे छोटे और भी पेड़ वगैरह दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे घास वगैरह देखे जा --

ऊपर एक जोपरी टाइप का दिख रहा है जो बांस से जो बांस से बना हुआ है और उसके ऊपर एक वाइट कलर का --

कुछ बाल लगा हुआ है कुछ बड़े-बड़े पेड़ वगैरह भी दिख रहा है कुछ पत्थर वगैरह देखे जा रहे हैं जो स्कोट है।

इस फोटो में हमें एक पार्क टाइप का दिख रहा है जिसके बाहर एक ब्लैक कलर का बाइक खड़ा है जिसके बगल में कुछ --

इसको हमें एक बाइक स्टेन दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बाइक वगैरह जो स्टेन में लगे हुए हैं कुछ बांस वगैरह दिख रहे हैं कुछ --

अ सूट वगैरा ब्लैक जींस पहने में कुछ येलो कलर सूट पहने हुए ऊपर कुछ ट्रैक लाइट वगैरा दिख रहा है कुछ ए_सी वगैरा दिख रहा है कुछ--

व दिखे जा रहे हैं कुछ नीचे ब्राउन कलर के टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं।

कुछ साउन्ड बॉक्स वगैरह भी साइड में रखे हुए दिखे जा रहे हैं और कुछ लाइट वगैरह --

सामने कुछ इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह दिख रहे जिसमें इलेक्ट्रिक वायर देखे जा रहे कुछ के सामने घर वगैरह देखे जिसका कलर व्हाइट एंड रेड कलर का है।

इस फोटो में हमें पीछे एक स्कूल दिख रहा है उसके सामने कुछ त्रिपाल टाइप का पीछा हुआ है जिसमें बहुत सारी लड़की --

इस फोटो में हमें एक रोड दिख रहा है जिसमें बगल में वाइट कलर का लाइन दिया हुआ है कुछ बड़े पेड़ वगैरह देखे जा रहे हैं --

एक साइकिल लगा हुआ है कुछ दुकान टाइप के दिख रहे हैं पार एक कुर्सी है जो येलो कलर का है कुछ फूल वगैरह दिख रहा है जिसमें छोटा-छोटा कागज उगज चिपकाए हुए हैं कुछ इलेक्ट्रिक के --